इस इमेज में कुछ मजूदर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कुछ गिट्टियाँ और कुछ रेत पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।